ये एक साइकिल का दुकान है यहाँ बहुत आदमी साइकिल लेने के लिए आते हैं और यहाँ बहुत अच्छा-अच्छा साइकिल मिलता है और बहुत कम दामों में साइकिल यहाँ मिलता है और यहाँ साइकिल सामने में बना के देता है।

एक लक्ष्मी किराना जनरल स्टोर है यहाँ बहोत सारे सामान मिलते है जैसे थैली चीनी चाय बिस्किट यहाँ बहुत आदमी सामान लेने के लिए आते हैं और यहाँ बहोत सस्ता सामान मिलता है।

टू व्हीलर और यहाँ बहुत शुद्ध पेट्रोल मिलता है और यहाँ बहुत दूर-दूर से आदमी पेट्रोल भराने --

और यह बहुत हरियाली देखने में लग रहा है यहाँ बहुत आदमी सुबह-शाम घूमने-टहलने के लिए आते हैं ।

एक दुकान है । यहाँ कॉपी कलम कट्टर मिलते हैं और यहाँ बहुत आदमी कॉपी कट्टर लेने के लिए आते हैं और यहाँ बहुत अच्छे और सस्ता मिलता है ।